यहां पर इस फोटो में एक आदमी ब्लू कलर के कपड़े पहने सामने खड़ा है।

यहां पर सैमसंग एल_जी का शोरूम है एल_जी वोल्टास भी है।

सामने एक गुलाबी कलर का फूल भी लगा हुआ है।

इस पे रैपर भी अभी चढ़ा हुआ है।

सामने दो दो लाइट लगे हैं।

जो की बहुत सुंदर है।

इसके ऊपर आइस क्रीम वाला लिखा हुआ है।

सामने आइसक्रीम का लोगो बना हुआ है और यहां पर सेलिब्रेसनस बिक रहे है।

और सेकंड गेट पर एक गाड़ी वाला रुका हुआ है।

सामने ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई है।

जिसमें चार महिला दो पुरुष कुछ काम कर रहे हैं।

उसके बगल में एक पीले रंग की वस्तु भी पड़ी हुई है।

नीचे में भारतीय डाक इंडियन पोस्ट लिखा हुआ है ये लाल कलर का है।

जिसके ऊपर फीयर द बियर्ड लिखा हुआ है।

गेट अअर छड़ वाला है।

और यहां की लाइटिंग बहोत अच्छी है यहां का अम्बिएंस बहोत अच्छा है।